इस चित्र में एक घर का निर्माण होता हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक रास्ता दिखाई दे रहा हे जहा पर कुछ इमारते नजर आ रही है। सामने एक दप्तर भी दिखाई दे रहा हे।

इस चित्र में एक मेज नजर--

पिल्लर नज़र आ रहे हैं ईमारत के अंदर कुछ पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं सामने एक रंग-बिरंगी दीवार भी नज़र आ रही है।

फ़ैक्टरी के बाहर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है। रोड के ऊपर दो व्यक्ति जाते हुए नजर आ रहे है। सामने कुछ बिजली के खंबे भी दिख रहे है।

सामने बड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे है पार्क के अंदर बहुत सारे झूले भी लगे हुए है जहाँ पर बच्चे झूला झूलते हुए दिख रहे है।

बोट के साथ एक छोटी सी नाव भी नजर आ रही है बोट के अंदर दो मंजिले दिखाई दे रही है।

नृत्य करते हुए दिख रहे हैं चे कुछ गुब्बारों की सजावट भी नज़र आ रही हैं सामने दीवार पर तस्वीर लगी हुई दिख रही हैं।

कुछ दुकाने नज़र आ रही हैं जिनके बाहर कांच के दरवाजे लगे हुए दिख रहे हैं दरवाजे के अंदर एक आदमी की परछाई नज़र आ रही हैं।

सामने कुछ विज्ञापन भी लगे हुए दिख रहे है दुकान के अंदर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है सामने एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

पार्लर की गेट पे कुछ महिलाओं की तस्वीरे चिपकी हुई दिख रही है जिनके बाहर कुछ गुब्बारों की सजावट भी नजर आ रही है।